बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के तूफान गाड़ी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

चेयर्स दिखाई दे रही है टेबल्स दिखाई दे रहे हैं रिसेप्शन एरिया दिखाई दे रहा है उसकी छत पे व्हाइट कलर पुता गया पाइप दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहें दीपक दिखाई दे रहे हैं लाइट्स दिखाई दे रही है बहोत कलर की ग्रीन ब्लू येलो रेड --